हमलोग यहाँ पे आते हैं और बहोत ही आसानी होते हैं कॉम्पिटर चलाने के लिए पैसा उसा उठाते हैं और बहोत ही सूंदर अच्छे से उठ जाते हैं। काफी ज्यादे अच्छे --

यहाँ पे हम लोग आते है और डीजल उजल भी लेते है। काफी ज्यादा अच्छे सुविद्या में मिलते है और बोहोत ही अच्छे देते है और --